सफेद रंग की वाशिंग मशीन के ऊपर सफेद रंग का स्प्लिट ए_सी रखा हुआ है यहां पर चॉकलेटी कलर का कपबोर्ड भी रखा हुआ है।

फ्रिज के ऊपर पेप्सी लिखा हुआ है।

यहां पे जो रिसेप्शन एरिया है वहां पर सुचालिस लिखा हुआ है उसके दोनों ओर--

इस चित्र में काफी सारे कपड़े नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक लड़का अपने फ़ोन को चलाते हुए नज़र आ रहा है।

ठीक दरवाजे के साथ में एक जी_एस_टी_आई_एन का एक पर्चा लगा हुआ है जोकि दीवार पर लटकाया हुआ--

नीले रंग की बत्ती लगी हुई है वो भी नजर आ रही है एक सफेद रंग की गाड़ी है जिसके आगे बोनट के ऊपर काले रंग का झंडा लगा हुआ है।

राइट साइड में एक काले रंग की आधी टी शर्ट पेहने हुए लड़का खड़ा है।

यह चित्र एक मिठाई के दुकान का चित्र है।

सफेद रंग की है उसके साथ में पिलर के कुछ साइकिले भी खड़ी है।

साथ में कुछ गाड़ियां लाइन पे पार्किंग एरिया में खड़ी हुई नजर आ रही है।